यह एक पार्क का चित्र है।

अगल बगल में बहोत से बड़े बड़े पेड़ है।

बहुत सारा डेस्क भी रखे हुए हैं।

ऊपर मैं ऑरेंज कलर और डिजाइन का टेंट लगाया गया है।

और बहोत सारे बिल्डिंग है सामने में बहोत ही छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

यह चित्र में बहोत सारे पौधे लगे हुए है।

और वाइट कलर का टाइल्स ऊपर में लगा हुआ है।

सामने में बहुत सारे व्यक्ति बैठे और खड़े हुए हैं।

बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

और बहुत से सामने में छोटे छोटे पेड़ है।

बगल में यहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे खंभे हैं जिसमें बहुत सारे तार लगे हुए है।

अगल बगल में बहुत सारे आदमी खड़े हुए है।

बहुत सारे छोटे बच्चे को खिलौने रखे हुए हैं।

रंग बिरंगे कलर के फूल यहां पर खिले हुए हैं येलो कलर के ऑरेंज कलर के।